और यहाँ तक की अब तो सी.एन.जी. भी चल गई है सी.एन.जी. भी पेट्रोल पंप डीज़ल पंप पे उपलब्ध होती है यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था होती है।

हरी मिर्च का स्पेशल अचार भी डाला जाता है भारत मे जो की काफी फेमस है तो हरी मिर्च काफी जगह काम आ --

ये एक साड़ी शोरूम है जहाँ पर अनेक प्रकार की साड़ियां मिलती है।

इसे हम अपने घूमने का स्थान भी बोल सकते है या आने जाने का रास्ता भी बोल सकते है।

यह तस्वीर दरभंगा हवाई अड्डा के सामने की तस्वीर है आप लोगों को दिख रहा होगा उसके आगे एक तिरंगा भी लगा हुआ है जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है।

यह कोई हवाई अड्डे के आस-पास के जगह की तस्वीर है आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है हवाई जहाज खड़ी हुई है।